और बच्चा पेड़ पर खड़ा होके साइड में कही देख रहा है।

सामने में एक दुकान है जिसके उपर बहोत बड़ा सा बुलू कलर का बोर्ड लगा हुआ है उसके बी डी एफ लिख हुआ है और उसमें और भी कुछ लिखा हुआ है।

सामने में एक वाइट ग्रीन और ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है स्टेट बैंक ए.टी.एम हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में।

सामने में एक बहोत बडा सा पहाड़ दिख रहा है। पहाड़ पर एक लड़का बैठा हुआ है।

और पूरा वाइट कलर का काउंटर है। काउंटर पे बहोत सारी बोटल भी रखी है।

और उसपे लिखा हुआ है श्री कृष्ण फ्रूट एव म फ्रूट एव जूस कॉर्नर --

सामने में एक रूम जैसा दिख रहा है जिस पर रेड और पिले कलर का बैलून से सजाया गया है।

और निचे से एक आदमी पटरी पे चढ़ के और सर पे बोरा ले के जा रहा है।

सामने में कुछ मछली रखी गयी है कुछ कीड़े जैसी मछलियाँ हैं ।

और उसके निचे शायद पिचकारी और बहोत सारे खिलौने रखे गए है।

उसके साइड साइड में बैठने के लिए भी बना है और उसके साइड में बहोत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए है।